यहाँ मंदिर हैं। तीन मंदिर हैं जो बीच में काले कलर की मूर्ति बैठी बढ़िया और आजू बाजु सफ़ेद कलर के पत्थरों की बनी हैं और पीले हल्के पीले डिजाईन हैं।

यह एक बिल्डिंग दिख रही है और उसमे कुछ विंडोस वगैरह भी दिख रही हैं बिल्डिंग

रखी है टेबल रखी है पिंक कलर की ऑरेंज एंड ब्लैक कलर के अन्दर कुछ दिख रहा है। स्काई ब्लू के कलर का नीचे ग्रे के कलर की टाइल्स दिख रही है। यह

यह एक रोड दिख रही है रोड में मोटरसाइकिल भी दिख रही। ब्लैक कलर की कार --

एक रोड दिख रही है ये रोड मोटर साइकिल वगेरा दिख रही हैं। ठेला भी दिख रहा है| यहाँ पेड़ लगा है पोस्टर लगा है अच्छा सा --

दिख रही है। रोड भी दिख रही हैं। रोड की जिनके पेड़ लगी हुए हैं। इंडिया लीफ वगेरा भी लगी हुई है कुछ --

यह एक रूम दिख रहा है रूम में बहुत सारी विन्डो दिख रही है विन्डो में बहुत सारे पर्दे दिख रहे है एंड एक विंडो की खिड़की खुली हुई है एण्ड --

यह पेट्रोल पम्प दिख रहा है। पेट्रोल पम्प में चार-पाच खम्भे दिख रहे हैं उसमे अलग अलग कलर्स के फूल--

यह एक अ यह एक तालाब दिख रहा है। तालाब में --